यहां पर अरमान फ्लावर नर्सरी है।

रोड ने शनि देव मंदिर पठानकोट--

डॉक्टर एक पर्सन की आई चेक कर रहे हैं।

दुकान के अंदर बहुत सारा सामानस रखा हुआ है।

और एक बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर बहोत सारे नोटपैड लगे हुए हैं।

यहां पर मटके वगैरह भी रखे हुए हैं बहुत स--

बोरियां भी बनी हुईं हैं यहां पर।

और डॉगी के लिए टॉय भी रखे हुए हैं।

ये एक स्टेशनरी की दुकान है दुकान के अंदर बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं।

और एक कबूतर के पैरों में चूड़ियां डाली हुई है छोटी छोटी सी--

एक लड़का पाइप के साथ उनमें पानी डाल रहा है।

बेड के इस दुकान के साथ एक रोड भी है।

और एक पिंक कलर का डस्टबिन भी रखा हुआ है।